छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं जमीन मे रेड और येलो कलर की पत्थर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

क्रीम है ऊपर पंखे चल रहे हैं दीवाल मे ए_सी लगी हुई नजर आ रही है।

एक चेयर में आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है ब्लू कलर का कपड़ा पहन के हुए--

दो आदमी हथौड़ी लेकर हाथ में काम कर रहें हैं ऊपर छज्जे का।

नहा रहें हैं। ब्लू कलर की खिड़की दिख रही है। व्हाइट दीवाल नजर आ रहें हैं। ऑरेंज बॉटल रखी हुई है।

छोटे छोटे टंकी नजर आ रहे है ग्रीन कलर की साइड में एक साइकल खड़ी है।

यह ढाबा है येलो रंग के बोर्ड में--

कुछ लोग जमीन में बैठे हुए दिख रहे हैं ग्रीन कलर की दरी बिछी हुई है।

दीवाल में टाइल्स लगी हुई है साइड में ब्लू और वाइट कलर के बैलून नजर आ रहे हैं।

जहां बहोत सारे सामान रखे हुए हैं जैसे--

घड़ी नज़र आ रही है। व्हाइट और पिंक कलर की कुछ पुट्ठे नज़र आ रहे हैं। फ्रेम नज़र आ रहा है।

बड़े बड़े पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं ऊपर ब्रिच नजर आ रहा है।

इसके बाहर बहुत सारे लगे हुए हैं सामने रोड में--